टाइल्स बिछा हुआ हैं।

एक व्यक्ति जो है चश्मा पहने है और चेक कलर के शर्ट पहने है बहुत सारी--

एक गार्डन हैं गार्डन में बहुत सारे बच्चे खेल रहे हैं।

एक व्यक्ति चेक कलर के हैं कलर के पहने हुए हैं।

जो आगे घर जो है ईंटो से भरा हुआ है रहना नहीं है एक दिख रहा है जो--

खाली है रोड --

घूम रहे है और और बैठ कर पूछ रहे है युनेक्स

है जाली में कुछ बोर्ड है उसमे कुछ लिखा हुआ है दो बाइक्स है बाइक के एक हेलमेट लगा हुआ है।

और क्रीम दिख रहे हैं।